एक कॉपी की दुकान है जिसमें पुस्तकें रखी हुई हैं और सामने कुछ पेन रखे हुए हैं।

जो हरे रंग के हैं उनके पीछे एक घर है बड़ी सी |

उसके सामने एक औरत खड़ी है जो की साड़ी पहनी हुई है ।